इस फोटो मे तार नजर आ रही है।

इस फोटो में माला की दुकान नजर आ रही है इस फोटो में लाइट नजर आ रही है। इस--

इस फोटो में गार्डन नजर आ रहा है इस फोटो में लड़का नजर आ रहा है इस--

तो मेरे लड़का नजर आ रहा है।

कुछ चीजें नजर आ रही हैं इस फोटो मे हमें स्पीकर नजर आ रहा है इस फोटो में--

इस फोटो में दुकान नजर आ रही है।

इस फोटो मैं झंडा नजर आ रहा हैं इस फोटो में मंडी नजर--

वस्त्र नजर आ रहा है इस फोटो में--

इस फोटो में हरियाली नजर आ रही है इस फोटो में बादल नजर आ रहें हैं इस फोटो में --

इस फोटो में अधिकारी विश्रामगृह नजर आ रहा--

इस फो टो में फ्रिज नजर आ रही है।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

इस फोटो में दवाइयां नजर आ रही है।